ये एक कमरा है जहां पर टेबल लगी है।

गॉगल्स भी पहनी हुई हैं लड़के ने।

कुछ क्विक लोन का लगाया हुआ है।

जो की चोंच से लेकर सिर तक थोड़ा हल्का लाल रंग का हैं।

मोबाइल कवर्स भी टंगे हुए हैं जैसे कि और स्कैनर लगा हुआ है क्यू_आर कोड का।

कुछ लोग बैंड बजा रहे हैं बाजा बजा रहे हैं।

जहां पर पत्थर पर बैठकर फोटो खींचा रहा है।

कुछ एक सीढ़ी लगी हुई है बहुत सारा सामान अलमारी में रखा हुआ है।

फर्श पर नीचे रेड कलर का कारपेट बिछा है।